बहोत सारी रंग बिरंगी बॉल्स रखी हुई है।

दीवार पर दो फोटो फ्रेम लगे हुए हैं एक स्विच प्लग दिखाई दे है।

यह एक जिम का दृश्य है यहां लड़के-लड़कियां दोनों जिम करने आए हुए हैं।

यहां कुछ अगरबत्ती लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पर हरे रंग के कारपेट पीछे हुए हैं।

बहोत सारे आइसक्रीम और चॉकलेट्स के फोटो बने हुए हैं।

यहां एक आइसक्रीम पार्लर है शीशे के द्वारा बहुत सारे आइसक्रीम दिखाई दे रहे हैं।

दिन का समय है और धूप की रोशनी आ रही है।

इस बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई है।

यहाँ पर एक टी_वी_एस सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं।

कुछ कागज और कॉपी रखे हुए हैं।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

एल_ई_डी लाइट जली हुई है यह लोग अपने दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं।

दो लोग यहां कुछ पूछताछ करने आए हुए हैं।